इधर आते-जाते हुए दिखाई दे रहे हैं दोपहर का समय है सूरज दिखाई दे रहा है सामने एक मेन रोड बनी हुई दिखाई दे रही है सामने की ओ --

साइड में कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे स्कूटी खड़ी हुई है दिन का समय दिखाई दे रहा है।

एगो एक बेंच मे एक कम्प्यूटर रखा गया कम्प्यूटर एक एक--

कैमरे दिखाई जिस कैमरे के सामने फोटो शूटिंग योगा करते दिखाई दे रहे हैं।

जो एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाई दे बेंच के ऊपर कई सारे सामान रखे गए हैं और कई अलमारियां बनाई गई हैं दीवाल में वाइट कलर का पुट्टी --

व्हाइट कलर की टाइलसे लगी हुई दिखाई दे रही है। वाइट कलर की शर्ट पेहने दिखाई दे रहे है।

मोमबत्ती लेते दिखाई दे रहे हैं पहले के तरह --

व्हाइट कलर की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है रात का समय दिखाई दे--

मुझे इस फोटो में लोहे का गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे वाइट कलर का लोहे का गेट लगा है।